हेलो एवरीवन जैसा कि आप देख रहे हैं आपको ये व्यू जिम का दिख रहा होगा ये व्यू दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

एंड ये व्यू दिखने में बहोत सुंदर लग रहा है आपको पेर भी दिख रहा होगा

हैलो एव्रीवन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको रेस्टोरेंट का व्यू दिख रहा है यहाँ पर दिल का रेड कलर बेलून भी लगा हुआ हैं टेबल लगी हुए हैं चेयर लगे हुई है एण्ड हर टेबल वो भी रखा है --

एंड आप देख सकते हैं आपको बड़े-बड़े और भी पेडस दिख रहे होंगे | खंभा लगा हुआ है और उसमें दीप एजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है एंड सामने देख सकते हैं बोर्ड पे शेर बना है ।

एण्ड टिशू पेपर दिख रहे होंगे। टेबल लगे हुए है चेयर भी लगे हुए है एण्ड बलूनस भी --